और सामने में बोतल का बोतल दिख रहा है।

और यह आदमी के हाथ में एक पर्स है।

यहां पे बहुत सारा अलग अलग भगवान जी का मूर्ति है।

और यहाँ पे ए_सी भी लगा है पंखा भी लगा है।

और यहां पे एक स्कैनर लगाया हुआ है।

पेड़ का आधा आधा कलर कर दिया है।

यहां पे बहुत सारा आदमी दिख रहा है।

पोस्टर का नीचे में कुर्सी में बहुत सारा आदमी बैठा भी है।

एक ढाबा है। ढाबा में बहुत सारा कुर्सी टेबल लगाया हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान में बहोत सारा डायरी रखा हैसामने में और यहां पे एक कुर्सी ब्लैक कलर का रखा है।

और यह इसके अंदर मे एक कार भी दिख रहा है।

और अंदर एक आदमी जा रहा है।

उसके पीछ आगे मे एक छोटा गाड़ी दिख रहा है।

और साइड साइड में बहुत सारा खिड़की भी है।

और अंदर में एक खिड़की है वो खिड़की का गेट खुला है।

जो बहुत अच्छा डिजाइन दिया है।

एम बाहर में है एक अंदर में है दुकान के पास और एक आदमी के साइड में एक पंखा है ।

वो दो आदमी दिख रहा है एक आदमी बॉक्स के पीछे है।

यहां पे साइड में एक कुर्सी दिख रहा है।

और यह रूम के ऊपर में एक पंखा दिख रहा है।

साइड साइड में गाड़ी बाइक भी लगाया हुआ है।

एक टेबल रखा है और रेड कलर का एक टेबुल रखा है।

यहां पे बहुत अलग अलग किसीम का फूल भी रखा है।